यह एक रूम है।

और बहोत सारा आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत अच्छे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

और आदमी के साइड में बहुत सारे कबूतर दाना चुभ रहे हैं।

यह एक दुकान है जिस में एक पंडित जी पूजा करवा रहे हैं।

यह एक ही प्रखा का कैंप है।

केम्प के साइड में एक आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रूम है और रूम में एक बेंच के ऊपर मोटर रखा हुआ है।

सारा लेडिस भी दिखाई दे रहे है।

जहां जहां पर दुकान का नाम एबी क्रिएशन है।

यह एक किसी चीज का दुकान है जिसके ऊपर में अशोक लीलैंड लिखा हुआ है।

ताइ में बहुत अच्छा लाइट लगा हुआ है उसके अंदर में दो आदमी दिखाई दे रहे है।

यह एक इलेक्ट्रानी का दुकान है।

कछुए के बगल में बहुत सारा फटा भी दिखाई दे रहे--

यह एक केक है जिसमें दिल छपा हुआ है।

और साइड में एक स्कूटी रखा हुआ है।

और पेड़ के साइड में तार खींचा गया है।

यहाँ एक बहोत बड़ा जंगल है।

कुछ बच्चे झूला भी झूल रहे हैं।

जो बजरंग बलि का मूर्ति रखा हुआ है।

और यहाँ पे बहुत सारा फूल दिखाई दे रहे हैं।

यह एक सड़क है जिसमे लाल कलर का फॉर व्हीलर दिखाई दे रहा हैं।

और साइड में ए पल का खुटा भी तार खींचा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

बहुत बड़ा टैंकर लगा हुआ है।

से साइड में गाड़ी लिखा हुआ है। उसके।

साइकिल के साइड में एक ग्लैम्बर गाड़ी दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहुत अच्छा पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी त्यौहार का हमें तस्वीर नजर आ रहें--

इसमें बहोत सारे दिए जले ये जलाए गए हैं।

यह एक सैलून है।